ये एक चित्र है इसमें बड़ा तालाब बना हुआ नजर आ रहा है और एक इंसान भी दिख रहा है।